पुतले बैठे हुए हैं मेल पुतले भी फीमेल भी एक पुतला है।

यहां पर एक आदमी भी बैठा हुआ है और ये बहुत बड़ा सा है।

डस्टबीन भी रखा हुआ है।

इसके ऊपर पर्चा लगा हुआ है जिसपे इसका प्राइस भी लिखा हुआ है।

परले जी जी भी है और सेवन स्टार चॉकलेट भी है और पर्क चॉकलेट भी है।

और इसका पेंट वेंट सब पुराना हो चुका है।

जो बैठने के लिए बनाई गई--

कई सारे झूमर लगे हुए हैं और नीचे की ओर कई सारे टाइल्स लगे हुए हैं। मार्बल लगी हैं बोहोत अच्छा।

चेयर पे कई लोग बैठे हुए हैं और हाथ में फाइल जैसा कुछ लिए और यहां पर लाइटें लगी हुई हैं।

यहां पर वाइल्डक्राफ्ट भी लिखा हुआ है जहां पर बच्चों के बैग मिलते हैं टी शर्ट भी मिलते हैं यहां पर बहोत सारा सामान मिलता है।

यहां पे कई सारे फूल भी रखे हुए है।

इसके बाहर कई सारे गमले लगे हुए हैं।

किताबें लाइन से लगी हुई हैं।

ठेले में टायर भी लगे हैं। ठेला नीले कलर का है।

खाने पीने की चीजे मिलती यहां--

यहां फोनपे का स्कैनर लगा हुआ--

पिलर भी लगा हुआ है लोहे का।

यहां पर नीचे घास बनी है।

ये घर बना है बहोत बड़ा घर बना है।

और यहां पर झूले भी लगे हुए हैं जो यहां बच्चे बैठे झूल रहे हैं।

और यहां डिस्प्ले में कई सारी चीजें रखी हुई हैं जिसे ऑर्डर कर खा भी सकते हैं।

बहुत मस्त लग रहा है अच्छा व्यू आ रहा है।

यहां का लाइन से कई सारी दुकाने हैं।

धूप निकली हुई है और बहोत मस्त पेड़ है कई सारे और नीचे घास है और यहां गेट भी लगा हुआ है।

चेयर पे और सिर पर तौलिया रखा हुआ है और बाहर भी दो आदमी बैठे हुए--

और यहां बैलून लगे हुए हैं पीले हरे बैलून लगे हुए हैं।

यहां हार वार भी चढे हैं ऊपर एक आदमी बैठा है।

यहां सिनक्रॉस लिखा हुआ है यहां सामान मिलता है बहुत सारा।

उसी के पास में एक डस्टबिन भी रखी हुई--

कई सारी मूर्तियां रखी हुई है जी--

और यहां पर कई सारी लकड़ियां भी रखी हुई हैं और स्टील की कैन भी है।